सामने इंटो का कुछ घर बना हुआ है जो पूरा टूटा हुआ है कुछ जगह टूटी हुई है आउटसाइड ईंटे लगी हुई है छत भी टूटी हुई है।

सामने स्विमिंग पुल है स्विमिंग पुल के जस्ट साइड मे एक बिल्डिंग बनी हुई है।

ऊपर भी कुछ बैनर लगे हुए हैं कुछ ए.सी. लगा हुआ है। साइड में पेड़ लगे हुए हैं। तारें जा रही हैं।

बाहर गाड़ियां रखी है सारी गाड़ियों के ऊपर बलून लगे हुए है कुछ बाइक खड़ी है झंडा लगा हुआ है।